और यह दुकानों के सामने गाड़ियां पार्किंग कयी गई हैं।

और यहां ब्लू शेड में एक दुकान है।

और सारे मूर्तियां भी है।

और इसके दाएं तरफ एक तीन पिलर भी है।

यह एक फूल का दुकान है।

जिसके दा दाएं तरफ दो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं।

और यहां तीन लड़कियां पुल अप्स कर रहे हैं।

यहां सारी गाड़ी रिपेयर कराने के लिए खड़ाई गई हैं।

यहां सामने वरीयर बेकरी नाम की एक बेकरी है।

सारे मजदूर काम कर रहे हैं।

और लकड़ियों से सेंटरिंग का भी काम चल रहा है।

यह एक नाई की दुकान है।

यह एक बस स्टॉप है।

और यह आदमी खड़ के फोटो खींच रहा है।

यहां दो लोग नमाज पढ़ रहे हैं।

यह एक वेदांता बुक्स वर्ल्ड नामक का दुकान है।

यहां पर एक फ्रिज में सारे केक रखे गए हैं।

यहां सभी बच्चे लोग खेलते हैं।

यहां सभी लोग भीड़ में जमा हुए हैं।